जहाँ जाने का जि जिसको जरुरत होता है वहाँ-वहाँ जाते हैं बस पकड़ के।

ये इसमें कई देशो से सामान मंगाया जाता है और --

फोटो खिंचवाने के लिए लोग रुके हुए हैं। घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। रोड के किनारे लगी है।

दुकान पे सभी प्रकार के फल मिलते हैं जैसे --

एक गुलदस्ते का दुकान है।